दृश्य में हमें कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं साथी हम यहां पर कुछ पेड़ भी देख पा रहे हैं। आसपास हमें पानी भी दिखाई दे रहा है। हमें यहां पर एक फैक्ट्री भी देखने को मिल रहा है।

दृश्य में हमें चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही जो की देखने में बहुत ही लग रही है हमें यहां पर एक खुला मैदान दिख रहा है इस पर हमें कुछ घास नजर आ रहे हैं कहीं हम यहां पर--